और ये बहुत अच्छे से नेटवर्क प्रोवाइड कराती है।

यहाँ पे लोग कार्ड के माध्यम से पैसे उठा सकते हैं।

पैसे उठाने के लिए पैसे जमा करने के लिए यहाँ पे लोग आसानी से पैसे उठा सकते है यहाँ पे काफी अच्छा लगता है यहाँ पे बहुत ही --

आइस क्रीम पानी और भी बहुत सारी समाने मिलती हैं यहाँ पे लोग आते हैं समानों को खरीदने के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सामान मिलते हैं जिसके कारण यहाँ पे लोग आते हैं।

बहुत ही बड़ी है इस मस्जिद में बहुत सारे लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पे मुस्लिम धर्मों के लोग आते हैं नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पे शाम को अजान भी दी जाती है।